फोटो में एक बस दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक ठेला दिखाई दे रहा है।

तीन लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फोटो में--

कुछ जिम की मशीनें दिखाई दे रही है।